एक बड़ा सा पिज्जा बनाने की मशीन रखी है।

यहाँ खुली जगहो पर पार्क जैसा हैं यहाँ ग्रीन कलर के पेड़ पौधे--

इसके आई साइट गेम कॉलर के पौधे भी है।

जिस पे येलो ऑरेंज रेड कलर पर--

कलर क्या बना है उसके अंदर ये--